नहीं है यहां पर बहोत सी गाड़ियों को खोलकर रखा हुआ है और बहुत ही गाड़ियों का काम--

इसमें कुछ बत्ते बच्चे भारतनाट्यम करते नजर आ रहे हैं।

इसमें हरे रंग की छोटी छोटी घास भी देखने को मिल रही है।

इस मंदिर के ऊपर बहोत ही सुंदर लाइटिंग कर रखी है जोकि लाइटिंग नीले और गुलाबी रंग की नजर--

जो की एक सीमेंट का स्टेच्यू भी बना हुआ नज़र आ रहा है।

जिस ग्राउंड के सामने बहोत से शोरूम बने हुए हैं यह शोरूम की बिल्डिंग --

यहां है इसमें कुछ व्यक्ति भी नजर आ रहे हैं जो कि बैग ले के बैठे हैं।

जहां पर देखा जा सकता है कि--

सामने की ओर बहुत से विकल नजर खड़े--

यहां पर सामने की ओर मिक्सचर रखा हुआ है।